और सामने की तरफ मैदान है जिसमें घास उगी हुई है बगल में पेड़ के कुछ पत्त --

की ये लाइनिंग में और सफ़ेद रंग का शर्ट्स पेहना हुआ है ये एक जिम है जिसमें --

परर पह पहियें भी नीचे दिख रहे हैं ई-रिक्शा के और और भी ई-रिक्शा खड़े हुए हैं उसके बगल में।

और और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है | पीछे बैग टांगकर और दो व्यक्ति अन्य दूर के तरफ --

ये एक जिम का रूम है जिसमे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है | सफ़ेद रंग के जु --

स्टाल और इस स्टाल पर एक एक अंदर की तरफ बैठे हुए हैं बाहर की तरफ एक --

जो कुछ व्यक्ति इसमें चकू भी चला रहे है उन्होंने ऊपर की तरफ कुछ नहीं अ कुछ नहीं पहना हुआ है निचे की तरफ उन्होंने --